तीन चार पांच पलटेनियम गाड़ी खड़ी है और छे से सात गाड़ियां हमको इसमें--

हमको इसमें एक खूब बड़ी सी वर माला दिख रही है।

दिख रहा है जिसमें कि हमको--

कुछ कुछ तो दिखाई देता है इसमें हमको--

हमको इसमें कोचिंग सेंटर दिख रहा है जिसको कोचिंग सेंटर के अंदर--

कलर के फलावर जैसे फूल दिख रहे हैं इन फूलों के पास--

निरक्षण कर रहे हैं निरीक्षण के भारत द्वारा सरकार--